ऐसा जगह फिर भी ठीक हेय घूमने-फिरने के उद्देश्य से ठीक हेय लेकिन रास्ता भी तो ने हेय पुल्ला एगो हेय बनल हेय।